पेड़ दिखाई दे रहे छोटा सा गोल्ड का गहरा गड्ढा खुदा हुआ दिखाई दे--

इस चित्र में सामने मॉडल इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल का बोर्ड लगा हुआ हैं पीछे--

अ टेबल पे ए पेपर रखा हुआ है व्यक्ति काली कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

बाहर बहोत कचरा पड़ा हुआ है साइड में कुछअ कुछ रखा हुआ नजर आ रहा है।

इस चित्र में जंगल दिखाई दे रहा है उसमें बहोत से हिरण भागते नज़र आ रहे है हरे-भरे पेड़ और पीछे की तरफ बहोत ही घना जंगल नज़र आ रहा है कत्थई रंग के --

चित्र में ये चित्र एक होटल का लग रहा है जिसमें काले रंग--

लिखा हुआ है कार सिल्वर रंग की जाती दिखाई दे रही है आसपास बड़े बड़े ट्रक --

इस चित्र में एक कन्या को पुरस्कार दिया जा रहा है बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

इस चित्र में एक ज्वैलरी शॉप हैं इसमें बहोत सारे हा ज्वैलरी रखी दिखाई दे रही सफेद रंग के डिब्बों में--

अ महिला को मिठाई हु ले जा ले लेत के नज़र आ --

कार जाती दिखाई दे रही है सामने की तरफ कलेक्शन --

उस चित्र में एक तालाब के पास किनारा दिखाई तालाब का किनारा दिखाई दे रहा है जहां पे व्यक्ति खाना पक पकाते।